यह एक अ रेस्टोरेंट नजर आ रहा है जहां पर दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं दो चेयर्स नजर आ रहे हैं वहां पर फैन दिखाई दे रहा है।

जिनमे कुछ खाने के दिखाई दे रहे हैं। आनज दिखाई दे रहा है। वही पर कुछ शैम्पू पैकेट्स दिखाई दे रहे हैं। सोप पैकेट्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो आप बास्केट भी नजर रहा है।

और वहाँ सीलिंग दिखाई दे रही है जो सफेद रंग की है लाइट्स लगी हुई दिख रही है।

और वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स और इलेक्ट्रिक वायर्स भी नजर आ रहे --

जो ग्लास है वह दिखाई दे रहा है। वही जो दीवार नजर आ रही है वह दिखाई दे रही है जो हरे रंग की है। लाइट्स लगी हई दिख रही है और वहां उनके जो रेस्टोरेंट के स्टाफ़ है वो दिख --

दिखाई दे रहा है जहां पर काफी लोग जो है बच्चों के खेलने के लिए जो है लाइटिंगस है वहां काफी कुछ नजर आ रहा है और एंट्री गेट वही एग्जिट गेट दिखाई दे रहा है।

-का बहुत बड़ा हॉल नज़र आ रहा है जिसकी सीलिंग दिख रही है जो सफ़ेद रंग की दिख रही है लाइटस लगे हुई है और वहां पर साब- सभी जो बच्चे हैं डांस करते हुए नज़रआ रहे हैं।

जिमनसिम नजर आ रहा है जहा पर काफी सारे अलग अलग जिमनासिम इक्विपमेंट दिखाइ दे रहे है जहा पर जो है कुछ लोग जिम कर हुए दिखाई दे रहे है वही पर काफी जो लोग है वह अपने अपने वर्कऑउट्स करते हुए नजर आ रहे है वहाँ ए_सी_ दिखाई दे रहा है जो--